यहां पर एक लाइब्रेरी का दृश्य दिख रहा उसके ऊपर एक येलो कलर का पोस्टर लगाया हुआ है विनोद लिखा हुआ इसमें।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

इधर में एक लंबा सा पोस्टर टंगा हुआ है उसके नीचे इंडियन लिखा हुआ है।

एक और ट्रैक्टर लगा हुआ है एक आदमीन कार के पास जा रहा है।

उसके बगल में बड़ा बड़ा पहाड़ है आसमान पूरा साफ है।

साइड में एक पानी का टैंक लगाया हुआ है ऊपर में।

ग्रील लगाया हुआ है बाहर यलो कलर का पेंट है।

बगल में भगवान जी का है और नीचे में बहुत सारे पेपर रखे हुए है।

पीछे बहुत सारे ग्रीस ग्रिल है बगल में एक दुकान है और बगल में एक नाद है वहां से एक पाइप ताना हुआ है डीजल --

तार इधर उधर लगाया हुआ है भगवान जी का फ्रेम टांगा हुआ है।

इस हाल में बहुत सारे लाइटें जल रही है।

बहुत सारे व्हाइट कलर का कुर्सी लगाया हुआ है।

बड़ा सा पोस्टर में लगाकर लिखा हुआ है छठ एवं कार्तिक पूर्णिमा के शुरू अवसर पर नगर पंचायत स्वरूप--

बहोत सारा मेला लगे हुए हैं इधर जो आस पास बच्चे लोग खरीद रहे हैं सामान को--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

अंदर में बहुत सारे रैक बनाए हुए हैं लोहा का और उसमें बहुत सारे तेल का डब्बा रखा हुआ है।

और जींस पैंट पहना है ब्लैक कलर का और नीचे में बहुत ब्लैक कलर का है और खिड़कियां लगाई हुई है।

यहां पर एक होटल का दृश्य दिख रहा है होटल में दीवाल है दीवाल पूरा एदम ईटा का बनाया हुआ है।

यहां पे एक मकान बन रहा है वहां पे एक आदमी खड़ा है बीच में हाथ में कागज लेकर और गले में पूरा आई कार्ड लगाकर और वाइट कलर का शर्ट पहना है।

एक आदमी त तगाड़ी लिया है कपार पर अगल बगल बहुत सारे पेड़ पौधे लगाए हुए आसमान पूरा साफ है।

उसके बगल में बहुत सारे ट्रक लगाए हुए हैं ऑरेंज कलर का एक बोलेरो खली खड़ी है वाइट कलर की।

एक बस व्हाइट कलर की है खड़ी है उसपे कई सारे लोग बैठे हुए हैं ऊपर।

आसमान पूरा साफ है नीचे एक पुलिस खड़ी है वह भीं बस को देख रही है वो मास्क लगाई है।

बड़ा सा पेड़ का दृश्य दिख रहा है बगल में दुकान का दृश्य दिख रहा है।